पीछे दूर-दूर तक पेड़ है पहाड़ है पीछे गेट लग रहा है स्टील में --

उस की शॉप है। यहाँ पे सेवलॉन भी है हैंडवाश का सेवलॉन रखा है हैंडवाश के लिए यहाँ --

यहाँ पे ब्लू कलर की टीन भी है ऑरेंज कलर की भी टीन पड़ी हुई है। काफी सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने वे आये हुए है।

मतलब की यहाँ पे आम दुकानें हैं। चीनी भी वगैरा मिलती है यहाँ पे एक उपर लाल कलर का टँक रखा हुआ है।

और ब्लैक कलर की पीछे चेयर भी है ये वाशिंग वाश में लग रहा है हैयर वाश करने के लिए पीछे--

और बाहर वाला मिस्त्री एक ई खम्बे को लगा रहा है। एक आदमी इनके बराबर मे खड़ा रेड सी फ़ाइल लेके --

और फुल्स लगे हुए हैं यहाँ पे एक हरी सी टीशर्ट में एक आदमी खड़ा है रेड टीशर्ट में खड़ा है आदमी --